एक बड़ा सा मैदान हैं जिस मैदान में हरी घास जमी हुई हैं और ए चर्च है जो चर्च के सामने ए ए जो सभी --

एक बड़ी सी नदी है जिस नदी में ये सभी लोग नहा रहे हैं पूजा कर रहे है और एक बड़ा सा नाव खड़ा हुआ है जिस नाव में कुछ लोग बेठे हुए हैं।